एक सड़क है इस सड़क पे एक बाइक खड़ी है इस सड़क के किनारे एक बड़ा सा मॉल है।

आकर पेट्रोल भरवाते है एवं बड़ी गाड़ियाँ आकर डीजल भरवाते है इस पेट्रोल पंप के बाहर एक कार --

इस ब्लैक बोर्ड पर तरह - तरह के चित्र छापे गए है यह घर काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

काउंटर रैक बनाए गए है यहाँ रैक पर तरह-तरह के--

यह मेडिकल है यह मेडिकल काफी बड़ा है इस मेडिकल में बहुत सारे रैक है यहाँ रैक पर तरह - तरह की दवाईयां --

यह एक सड़क है यह सड़क काफी सुंदर है इस सड़क पर बहुत से आदमी एवं गाड़ी आते जाते है।

यह एक घर है यह घर के बाहर इस घर के बाहर एक सड़क है इस सड़क पर एक बाइक खड़ी है यहाँ पर--

बहुत सारे पेड़ पौधे है एवं बहुत सारे पशु -पक्षी --

एक बड़ी सी बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को काफी सुंदर सजाया गया है इस बिल्डिंग के बगल में एक --

यहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है इस विद्यालय के बाहर--

यह एक कॉलेज है यह कॉलेज काफ़ी बड़ा है यह कॉलेज दो मंजिला भी है यहाँ बहुत सारे लड़के एवं लड़किया पड़ने आते है।